मुझे इस फोटो में सामने की ओर कई सारे हरे-हरे पेड़-पौधे लगे हुए दिखाई दे बने हुए दिखाई दे रहे सामने दो पहाड़ों के बीचो --

एक दिखाई दे इस कमरे में वायरिंग फैली हुई दिखाई दे रही हैं सामने की ओर दिन का समय दिखाई

डली हुई दिखाई दे रही है सामने की ओर पिज्जा इस समय में दिखाई दे रहा है हरे भरे हरे भरे पेड़ पौधे--

आजू बाजू कई सारे बाउंड्री वाउंड्री बनी हुई दिखाई दे नीला आसमान दिखाइ दे सामने की ओर--

इसे बुको की को बुको को रखी हुई दिखाई दे रही है सामने की ओ दुकानों खुल हुई है।

पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं सामने की ओर--

मुझे सामने का दीवार के पुटी दिखाई दे रही है सामने की ओर--

सेटर लगाई गई है सामने को एक इंसान बैठ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो के सामने काफी सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहा है और सामने को--

इधर बड़े कलर की लाइटिंग वाइटिंग जलती हुई दिखाई दे रही है लगे दिखाई--

कागज बना हूं दिखाइ देता सारी--

व्हाईट कलर से पोते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने दो घर व्हाईट कलर पोते हुई दिखाई दे रहा है सामने की ओर --

नीला आसमान दिखाई दे सामने को दो इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहे--

हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे सामने एक नदी बनी हुई दिखाई दे रही इसमें।